यहाँ पर रेल्वे स्टेशन दिखाई दे रहा है प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी हुई है यहाँ पर पीने के पानी के लिए नल लगा हुआ है।

यहाँ पर एक दरवाजा बना हुआ है ये दरवाजा पत्थरों का बना हुआ है दरवाजे के बाहर से एक टेम्पो जा रहा है।

यहाँ पर एक पार्क है। पार्क मे काले रंग का दरवाजा लगा हुआ है। पार्क मे घास भी लगी हुई है। पार्क के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए है।